सीलिंग में झूमर लगा हुआ है ।

बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो की जिम में काम आते हैं।

एक सौ पैतालीस ईस्वी में स्थापित हुआ है।

एक लड़का किया गया।